इस तस्वीर में कुछ लोग देखे जा सकते हैं। और उन्होंने रेलिंग को पकड़ रखा है। सामने मैं बहुत सारी दो पहिया वाहन ल- लगी हुई है।

यह एक सैलून की तस्वीर हैं जिसके अंदर एक युवक की दाढ़ी बनाई जा रही हैं सतातो और सैलून में काम करने वाले व्यक्ति वहां कुछ कम कर रहैं हैं।

इस तस्वीर में कुछ लोग मीटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं| और साथ ही एक दूसरे को देख भी रहे हैं।

यह एक बुक स्टॉल की तस्वीर है| जहां एक आदमी खड़ा है और बुक स्टाल में बहुत सारी किताबें रखी हुई है।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

इस तस्वीर में एक आदमी मछली पेच रहा है। टाढा उस का हाथ में पानी का पाइप हे। जो एक बाल्टी में पानी पैर रहा है। उसके अगल बगल बहुत सरे लोग है।

इस तस्वीर में बस के ऊपर लोग चढ़े हुए हैं तथा कुछ लोग जमीन के नीचे खड़े हैं तथा एक पुलिस वाला भी दिखाई पड़ रहा है।